वहा पर तीन चेयर दिखाई दे रहे है। जो लाल कलर के हैं।

और वहां पर सूर्यास्त हो रहा है उसका भी नजारा देखने को हमें मिल रहा है।

यह एक बहुत बड़ा सा दुकान है जिस दुकान का नाम हरि ओम लक्ष्मी नारायण ज्वैलर्स है।

दुकान के अन्दर दो आदमी है दुकान कर दुकान के गेट पर काँच लगा हुआ है।

यह एक शोरूम है यह एक शोरूम है।

यह एक जिम का तस्वीर है।

यह घर को अह ऑरेंज कलर से रंग किया गया है।

यह हेक गार्डन का तस्वीर है।

कई रंगों के टेबुल रखे हुए है।

और रूम में बहुत छोटा भीम का चित्र बना हुआ है।

और घर को अह येलो कलर से पेंट किया गया है और घर डबल फ्लोर वाला घर है।

उसके पीछे एक ब्लैक कलर का सोफा वाला कुर्सी है और उसके पूरे साइड में कई सारे फूलों के दस्ताने भी रखे हुए।

और उसके साइड में हरा भरा बहुत घास है।

एक ऐ_सी लगा हुआ है और एक पंखा भी लगा हुआ है साइड में एक प्रिंटिंग मशीन भी रखा हुआ है ।

यह महल रेड कलर का है इसके साइड में कोना में बड़ा सा पाइप लगा हुआ है।

यह ग ग्राउंड में एक पर्दा लगा हुआ है।।

यह एक आदमी का तस्वीर है।

यह रूम को ऑरेंज कलर से पेंट किया गया है।